बहोत सारी चीजें रखी हैं यहां पे बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे आदमी आ जा रहे है। एक आदमी--

यहां पर टेबल पर बहुत सारी फाइल --

बैठे हुए है। एक आदमी के बाल कट रहे है।

यह एक पार्क की तस्वीर है यहां पे बहुत सारे झूले--

ये एक प्रसुन की दुकान है सामने बहोत सारी--

यह एक दुकान है जिस पर टीमैक्स वर्ल्ड लिखा हुआ है।

यहां पे बहोत साड़ी घड़ी रखी हुई है यह पे बहोत सारी चीजें रखी हुई है यहां पे घड़ी का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी लड़के बैठे हुए हैं।

यहां पे अं अंदर बहोत सारे आदमी है वहां पे ए_सी भी लगा हुआ है।

यह दरवाजे है सामने खुला मैदान है वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं उसमें हॉल का--

यहां पे सफेद कलर से पेन्ट किया गया है यहां पे लाइटे भी लगी हुई है और यहां पे दो आदमी सही कर रहे हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ जिसने--

यह एक किराना स्टोर है जिसका नाम बुद्ध राजा किराना स्टोर है।

टॉफी भी रखी हुई है यहां पर रिजल्ट भी रखी हुई है।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

यहां पे बिजली के खंभे भी लगाए हैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ऊपर एक सफेद कलर के टंकी--

रखी हुई है यहां पे टीन लगाई हुई है छत पे।

यह एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है यहां पे--

यहां पे काले कलर की कुर्सी रखी हुई है यहां पे लाइट भी लगी हुई है और यहां पे सफेद कलर से पेंट किया गया है।